first java program first java program के परिचय पर इस tutorial में आपका स्वागत हैं
इस tutorial में हम सीखेंगे
एक सरल java program बनाना
program compile करना
program रन करना और
java में अनुकरण किए java वाले नामकरण के चलन के बारे में
यहाँ हम ubuntu version 1110 और jdk 16 का उपयोग कर रहे हैं
इस tutorial का अनुकरण करने के लिए आपके system पर jdk 16 संस्थापित होना जरूरी है
यदि नहीं तो संबंधित tutorial के लिए हमारी दिखायी गयी website पर जाएँ
ठिक है अब अपना पहला java program लिखें
उसके लिए आपको terminal और text editor की जरूरत होगी
मैं मेरे text editor के रूप में gedit का उपयोग कर रहा हूँ
text editor में हम पहले helloworld class बनाएंगे
अतः type करें class helloworld helloworld class का name है
और open curly bracket enter करें और close curly bracket
इन दो curly brackets के बीच का code class helloworld से संबंधित होगा
अब ऊपर save icon पर क्लिक कर फ़ाइल सेव करें
लगातार फ़ाइल सेव करना एक अच्छा अभ्यास है
as save as dialog box खुलता है
आपको अपनी फ़ाइल कहाँ सेव करनी है उस स्थान को browse करें
यहाँ मैं home directory में एक folder बनाऊँगा
इसे demo name दें और enter दबाएँ
फिर इस folder के अंदर हम फ़ाइल को सेव करेंगे
name textbox में class का name type करें
java में class और फ़ाइल का name एकही होना चाहिए
याद रखें कि हमने helloworld class बनाया है
इसलिए हम helloworld dot java के रूप में फ़ाइल so करेंगे
java फ़ाइल को dot java फ़ाइल extension दिया गया है
फिर save button पर click करें अतः अब फ़ाइल so हो गई है
class के अंदर हम main method लिखेंगे
अतः टाइप करें :
public static void main parentheses में parentheses string arg स्क्वैर ब्रैकेट्स
main function program के शुरुआती प्वॉइन्ट को चिन्हित करता है
हम आने वाले tutorial में public static void और string arg का वर्णन करेंगे
फिर से open curly bracket
enter दबाएँ और close curly bracket
इन दो curly brackets के बीच का code main method से संबंधित है
अब हम terminal पर line प्रदर्शित करने के लिए एक code लिखेंगे
अतः main method के अंदर type करें system dot out dot println parentheses semicolon
line print करने के लिए statement है
semicolon का उपयोग line को समाप्त करने के लिए किया गया है
अब java को आदेश दें जो print करना है
अतः parentheses के अंदर double quotes में type करें my first java program exclamation mark
save icon पर क्लिक करके फ़ाइल सेव करें
terminal पर जाएँ
सुनिश्चित करें कि आप उस directory में हैं जहाँ आपने अपना helloworld java सेव किया है
याद रखें कि मैं अपनी home directory में हूँ
अतः type करें cd space demo और enter दबाएँ
ls
हम देखते हैं helloworld java फ़ाइल demo folder में मौजूद है
इस फ़ाइल को compile करें अतः type करें javac space helloworld dot java और enter दबाएँ
यह हमारी बनाई हुई फ़ाइल को compiles करता है
ठीक है हम देख सकते हैं फ़ाइल बिना किसी error के compiled की गई है
हम देख सकते हैं helloworld class फ़ाइल बन चुकी है
यह फ़ाइल कहीं भी रन हो सकती है
किसी भी operating system पर
साथ ही हमें java compiler की भी जररूत नहीं है
इसलिए java का ठीक ही वर्णन किया गया है एक बार बनाएँ और कही भी रन करें
अतः सफल compilation के बाद command का उपयोग करके program रन करें
java इस बार c नहीं space helloworld और dot java नहीं extension और enter दबाएँ
आपको my first java program! output मिलेगा
अतः हमने अपना पहला java program let लिया है editor पर वापस से जाएँ
अब semicolon मिटाएँ जो statement के आखिरी में है
save icon पर click करें
terminal पर वापस जाएँ
javac helloworld dot java command run करें
compiler एक error देता है
यह दर्शाता है a semi colon is expected on the fifth line
अप arrow error statement दर्शाता है
editor पर वापस जाएँ
java में सभी statements सेमी कॉलन के साथ समाप्त होते हैं
अतः पाँचवी line पर जाएँ और सेमी कॉलन जोड़ें
save icon पर click करें यह जरूरी है कि कम्पाइल करने से पहले फ़ाइल सेव करें
terminal पर वापस जाएँ
javac helloworld dot javaका उपयोग करके फ़ाइल compile करें
जैसे कि हमने देखा बिना किसी एरर के फ़ाइल सफलतापूर्वक compiled हो गई है
अब java helloworld command का उपयोग करके program now करें और
हम output देखते हैं my first java program!
इस तरह से आप java में errors को संभालें
जैसे जैसे as बढेंगे हम errors के बारे में अधिक सीखेंगें
अब हम देखेंगे कि java में naming conventions we हैं
class नेम camelcase में होना चाहिए
जिसका अर्थ है कि प्रत्येक नए शब्द की शुरूवात एक अपरकेस से हो
उदाहरण : class helloworld class chessgame
इसलिए hello का h और world का w अपरकेस में है
इसी प्रकार चेस और गेम के c और g क्रमशः अपरकेस में हैं
method नेम मिक्स्डकेस में होना चाहिए
जिसका अर्थ है कि पहला शब्द lowercase से शुरू होना चाहिए
और सभी नए शब्द अपरकेस के साथ शुरू करने चाहिए
और method नेम एक क्रिया होनी चाहिए
उदाहरणस्वरूप : showstring main gotohelp यहाँ show का s lowercase में है जब कि string का s अपरकेस में है
variable नेम digits के साथ शुरू नहीं होने चाहिए
हम अपने class method या variable नेम के लिए keywords का उपयोग नहीं कर सकते हैं
उदाहरणस्वरूप : keywords का उपयोग नहीं कर सकते हैं जैसे public private void static और कई अधिक
अतः इस tutorial में हमने एक सामान्य java program लिखना compile करना और रन करना सीखा
साथ ही हमने java में अनुकरण किए java वाले naming conventions देखें
स्वमूल्यांकन के लिए java file name and class name should be same print करने के लिए एक सरल java program लिखें
spoken tutorial project के बारें में अधिक जानने के लिए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
spoken tutorial project team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
online test pass करने वालों को प्रमाणपत्र भी देते हैं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
हम इस tutorial की समाप्ति पर आ गए हैं
यह स्क्रिप्ट लता द्वारा अनुवादित है मैं श्रुति आर्य अब आप से विदा लेती हूँ
धन्यवाद